ये एक ऑफिस है जहाँ पर एक बाइक रखी हुवी है। एक फोर व्हीलर है।

ये एक जिम है जहाँ पर कई तरह के मशीनस रखे हुए हैं पुशप के लिए।

और यहाँ पे दो टीचर्स हैं जो बच्चों को डांस सिखा रहे हैं और एक दो टीचर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे हर एज ग्रुप के बच्चे है जो यहाँ पे डांस सीखने के लिए आए हैं।

जहाँ से भी पानी छोड़ा नहीं गया है तो यहाँ पर काफी सारे पत्थर भी दिख रहे हैं और ये सुंदर नजरा देखने में बहोत ही ज्यादा सुंदर है।

ये एक बुक की दुकान है जिसका नाम है पंकज बुक डिपो ई ये है देवरिया के न्यू कालोनी में जलकल कॉम्पलेस ।